और अंदर लाइट्स भी लगे हुए हैं और यहाँ पे साइड़ से थोड़ी-थोड़ी खिड़कियाँ सी लगी हुई हैं जो बाहर का नज़ारा आ रहा हैं और यहाँ पर ऑरेंज येलो कलर की फूलों की माला है।

और ऊपर व्हाइट कलर में लाईट लगी हुई हैं दीवार में मिरर लगे हुए हैं ऊपर पंखा लगा हुआ है और यहाॅं पर बोहोत सारे लोग एक्सरसाइज करने आते हैं।

यहां पर सामने एक शर्ट रखी हुई है और यहा पर उसके नीचे एक पोलोथिन रखी हुई है जिसका व्हाइट कलर है और यहां पर जो शर्ट रखी हुई है उसका ब्लैक सा ब्लू कलर और येलो सा कलर दिखाई दे रहा है।